ग्राउंड में कुछ बीचो-बीच चॉक से बनी हुई चोकोल दिखाई दे रहे है दूर--

फोर व्हीलर दिख रही है जो कि सामने का हिस्सा खुला हुआ है सामने का मैन गेट खुला हुआ है।

निरमा साबुन ऑटो आदि दिखाई दे रहे है।

ये एक पेंटिंग है इसमें--

सामने एक ग्राउंड है जिस अ ग्राउंड का ग्रीन कलर की घास लगी हुई है।

व्हाइट कलर के रंग से दिखाई दे रहे है कुछ व्यक्ति आते जाते हुए दिखाई दे --

ये मकान बना बना बनाया अधूरा दिखाई दे दे रहा है जिसका काम चल रहा है।